नाव के अंदर पानी में हरी घास दिख रही है।

कुछ लड़कियां नाचती हुई दिख रही है।

जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं।

धूप का अक्ष दिख रहा है।

लाल रंग का एक पाइप दिख रहा है।

इस तस्वीर में दो मूर्ति दिख रही है।

सर पर मुकुट लगे हुए हैं।

लाल रंग की लाइट लगी हुई है।

बड़ा सा एक दरवाजा लगाया हुआ है।

उन लड़कियों को देख रही है।

काले रंग की कुर्सियां रखी हुई हैं दो जीने बने हुए हैं।

उनको समझा रहे हैं।

एक खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है।

मंदिर पर झंडा लगा है।

एक गाड़ी पीछे से आ रही है।

जिसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है।

है घास खा रही है घास का रंग हरा है।

छत पर सफेद लाइट लगी हुई है।

ये तस्वीर एक बहोत खूबसूरत हरे मैदान की है।

ये तस्वीर मिट्टी की एक सड़क की है।

सड़क बहुत खराब सी दिख रही है।

जिस पर बहुत ही खूबसूरत से--

एक लड़की मोबाइल पर बात करती हुई दिख रही है।

ऊपर सफेद रंग की लाइट जल रही हैं।

उसको देख रही है दिखने में बहुत अच्छा है।

बहोत खूबसूरती से इसे सजाया गया है।